इस इमेज में हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोहुत सारे कलरफुल झंडे लगे हुए हैं। झंड़े व्हाइट कलर --

इस इ मेज में हमें एक शॉप दिख रही है यहाँ पे बोहोत सारा सामान रखा हुआ है।

फर्नीचर लगा है जिस पे एक तौल वजन तौलने की मशीन रखी हुई है यहां पे एक कपड़ा डला है। छोटे-छोटे --

बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं। यहां पे काफी सारे बलफ भी लगे हुए हैं। सीढ़ी बनी हुई है बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। यहां पे एक अंकल हैं जो अंदर जा रहे हैं सीढ़ी के। उन्होंने ब्लैक कलर की स्वेटर पहनी हुई है। काफी सारी बाइक्स खड़ी हुई --

इस इमेज में हमें मैदान दिख रहा है। यहाँ पे छोटे-छोटे घास लगे हुए है। थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें एक गेट दिख रहा है लोहे का। गेट के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ लिखा है।

बस के ऊपर काफी सारे माला के हार बने हुए हैं अंदर थोड़े बलून भी दिख रहे हैं। यहां पे बोहोत सारा कचरा डला है। नीचे लेफ्ट साइड में पेड़ लगे हैं। राइट साइड में एक और बस दिख रही है। ऊपर हमें आसमान दिख रहा है।

साइड में शटर दिख रही है। शटर आधी खुली हुई है ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ब्लू कलर का बोहोत बड़ा। यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए हैं इन्होने वाच में टाइम देख रहे हैं।

इस इमेज मे हमे एक चर्च दिखाई दे रहा है। चर्च पर बहोत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। यहाँ पर बलप लगा है एक यहाँ एको तिरंगा झण्डा लगा है जिसके पास काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पर एक अंकल खड़े दिख रहे हैं जिनके हाथ में रेड कलर का झूला है और लेफ्ट साइड में खेत दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें छोटी-छोटी घास लगी है और पेड़ भी लगे हैं।

बस के पीछे काफी सारे पेड़ लगे हैं। यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है बहोत बड़ी यहाँ पे और भी बाइकें खड़ी हैं। कुछ लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक तालाब दिख रहा है तालाब के पास सीडी बनी हुई है जिस पे एक भैया खड़े हैं।

इसमे कुछ लोग बैठे हुए है | यहाँ पर सामने बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं | काफी सारे पत्थर डले हुए है छोटे बड़े | अंकल ने जूते पहने हुए हैं।

उन्होंने रेड टी-शर्ट पहनी हुई है। सामने हमें बहुत बड़ी नदी दिख रही है। नदी के लेफ्ट एण्ड राइट साइड बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहां कुछ घर भी बने हुए हैं। ऊपर हमें आसमान दिख रहा है। थोड़े बादल भी है।